बहुत ही यहाँ बहुत सारे तरह के पुस्तक हैं इधर बहुत अच्छे हैं।

और बहुत ही अच्छी प्रदर्शन करते हुए इस साल की टीम बहुत ही अच्छी देखने में बहुत ही आदमी लोग आए हुए हैं बहुत सारा आदमी लोग --

और जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर सारे चीज सामान मिल जाएगी। ये स्मार्ट पॉइंट मॉल है जो जमुई में है।

आप लोग देख सकते है यह खजूर की घास है इससे ताड़ी निकाली जाती है देख सकते है ताड़ी लबड़ी लगाया गया है।